निचे कालीन हरे रंग का है सामने जो भवन दिख रहा है वह गुलाबी कलर का नज़र बहोत अच्छा लग रहा है।

भगवान् की प्रार्थना कर रहे है ईश्वर से अपनी मुराद पूरी करने की कामना कर रहे है बोहोत ही आकर्षक दृश्य है।

यह किसी कार्यक्रम के का एक हिस्सा है यहां पर कुछ लोग हाथ मे ध्वज लिए खड़े हैं।

एक मशीन तुले की लगी है जिसपे वजन तोला जा सकता है।

गुब्बारे लाल कॉलर के बंधे हुए है पीछे गुलाबी रंग की जालीदार यम म खुबसूरत तसवीर लगी हुई है।

सुंदर आसमानी दृश्य है सूरज दिख रहा है नाव पर एक व्यक्ति चड़ा है साथ मे एक नदी जैसा दृश्यदिख रहा है।

सामने कई लोग हाथ जोड़ कर उस प्राथना मै शामिल दिख रहे है आकर्षक दृश्य है।

ये बहुत खुबसूरत जहा की जो किसी वाहन पर रखी हुई नजर आ रही है केले के पत्ते हैपीले रंग से पुरा मंडप सजा हुआ है।

एक महिला पीली साड़ी पेहने हुए ख़रीददारी कर रही है यहाँ पर टोकरी नुमा दुकाने बनी हुई अलग से नजर आ रही है।

यहां पर लोगो का पहचान पत्र बनाया जा रहा है एक व्यक्ति जो अपने पहचान पत्र के लिए कुछ काला करता हुआ नज़र आ रहा है।

यहाँ पर रेत पीले कलर में रखा हुआ है गुलाबी भी रेख है कुछ टीशर्ट पेहने लड़के सामान का लेन-देन करते नजर फोटो आ रहे है।

जैसे किसी को कोई गिफ्ट देने वाले हो साथ मे कई बच्चे मस्ती के मूड मे उनसे सामने खड़े हुए है और एक दूसरे से बात कर रहे हैं।

लोग आपस मै बात करने से हिचक भी रहे है लेकिन मास्क भी लगाए हुए है कुछ पानी की बॉटल रखी हुई है कुछ फाइल भी यहां पर रखी हुई है ।

यह एक नृत्य कलाकार हैनृत्य की मुद्रा में हाथ सामने किए है दूसरा हाथ नीचे को किए हुए है नृत्य में उपयोग किए जाने वाले वस्त्रों को धारण किए है।

एक व्यक्ति पौधो की सिचाई करता हुआ नजर आ रहा है यह एक महिला है साथ में बैठ के लिए एक बेंच भी बानी हुई है।

यह एक पूजा स्थल है यहां पर श्वेत वस्त्र पहनें हुए कई लोग खड़े हुए है।

यहां मंगलकामना करते हुए पीले वस्त्र अपने कंधे पर डाले हुए है और सीड़ियो पर तक खड़े हुए है।